साफ सुथरा रात का मौसम लग रहा है यहां पे हुई है।

पीछे सड़क बनी हुई है और यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है आस पास कोई भी इंसान नहीं है।

नीले कलर के पर्दे लगे हुए है और गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए हैं येलो कलर के फ्लावर है और गुलाबी रंग के फ्लावर हैं।

ये सभी बेंच पे बैठे हुए हैं और यहां पे सब की किताबें ये सारे पढ़ रहे हैं।

यहां घास भी हरी कलर की बिछी हुई है।

स्पीकर और बसों में होरन के समान इलेक्ट्रिक समान यहां पे और --

केले रखी हुई है और यहां पे अलग अलग आए हुए हैं सभी के यहां पे दो आदमी बैठे हुए हैं दिखाई नहीं दे रहा है।

हैं बहोत सारे लोग बैठे दिख नहीं रहे हैं तीन चार लोग दिख रहे हैं गेट लगा हुआ है व्हाइट कलर का।

यह एक संगीत कलाकार केंद्र है यहां पे संगीत को सिखाया जाता है यहां पास में ट्राफियां पड़ी हुई है बहोत सारी --

की मूर्ति है और यहां बहुत सारे पेड़ है यहां सीढ़ियां लगी हुई है चौकी बनी हुई है कुंडी भी बनी हुई है।

है पंखा लगा हुआ है यहां बहोत सारी बुक किताबें रखी हुई है और यह बहोत ही सुंदर दिख रहा है यहां परफ्यूम --